यहाँ सामने काफी सारे चेयर रखे है फैन लगे हुए हैं सीलिंग में एलईडी लाइट जलती हुई दिख रही हैं।

पीछे काफी सारी एसेसरीज है एंड कुछ बर्तन रखे हैं जमीन दिख रही है।

पेड़ दिख रहे है हरे भरे स्टेचू दिख रहे है ऊंची बिल्डिंग --